ये जो पिक्चर है क्रिकेट ग्राउंड की पिक्चर है जहां पे सीरिफ एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है यानि की जैसा क्रिकेट ग्राउंड का दिखता है।

मुझे आठ से दस लोग दिखाई दे रहे हैं।

टेबल जो है काले रंग का है।

और जो बिल्डिंग का कलर है जो पीछे से देख सकता हूं मैं वो तीन मंजिला स्टोरेज बिल्डिंग है।

और जो निचे जमीन दिखाई दे रही है वो काफी ही संगमरमर से बनी हुई जमीन अच्छी लग रही है देखने में और अंदर--

बीच में सेन्टर में ट्वेंटी फाइवी लिखा है वो काफ़ी देखने में अच्छा अलग लग रहा है।

ये पिक्चर एक फंक्शन की लग रही है।

और फंक्शन मे लोग जाते हुए हैं और यहां पे आस पास मे काफी अच्छी लाइटिंग वगैरा लगी हुई जलती हुई दिखाई दे रही है।

और यहां पे कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए भी नजर आ रहे हैं मुझे--

और यहां पे जो पीछे का आसमान मेरे को क्लियर दिख रहा है जिससे साफ साफ पता लग रहा--

और ये दुकान अलग अलग प्रकार की लग रही है ये दुकान जो है।

एक ने लाइन वाली शर्ट डाली है एक बंदे ने व्हाइट कलर की शर्ट डाली हुई है।

और मैं देख सकता हूँ कि ये मोबाइल फोन की दुकान है जो पीछे मोबाइल फोन बहोत सारे नजर मुझे आ रहें हैं।

तो काफी अनोखा दृश्य ले रहे हैं जो काफी अलग और डिफरेंट लग रहे हैं देखने में।

पार्क का एरिया है यहां पे काफी अच्छी साज सजावट पेड़ पौधे लगे हुए हैं एक बिल्डिंग और इमारत भी नजर आ रही हैं।

चैन पॉलिश लिखा करके है यहां पे काफी लोग आए हुए नजर आरहे हैं रेस्टोरेंट टाइप का ये एरिया है।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

और यहां पे अह स्कूल वैन वगैरह भी देखने को लग रही--

पे नजर आ रहे है जैसा कि इस पिक्चर में मैं देख सकता हूं।

यहा वगैरा लगे हुए नजर आ रहे हैं और साफ साफ लग रहा है की पूजा का धार्मिक स्थल है।

और यहां पे अ कुछ साइकिल वगैरा खड़ी हुई नजर मुझे आ रही है।

और यहां पे अ ये क्रीम वगैरह बनने का काम किया जाता है मेरे हिसाब से जैसा नीले रंग का यहां पे वातावरण मुझे दिखाई सॉरी उस रंग का वातावरण मुझे दिखाई दे रहा है।